विभिन्न प्रकार के हैं और बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं चारो तर --

सीढियाँ में लाल रंग की चादर बिछे हुए है और दो आदमी हैं।

और यहाँ पर एक एसी दिखाई दे रही है। बहोत सारे टेबलें नजर आ रही है।

ये मेला काफी अच्छा लग रहा है देखने में।

यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक है।

इस यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये कोई रूम है। काफी बड़े रूम --

और चारों तरफ हरे-भरे बड़े-बड़े वृक्ष नजर आ रहे हैं।

टेबल रखा हुआ है। टेबल के दोनों साइड में दो चेयर रखे हुए हैं काले रंग --

पर मे तीन गुंबज है जो कि सफेद रंग की है। उसके ऊपर झंडे लहर रहे हैं।

और यहाँ पर एक छोटा-सा स्टेज बना हुआ है जिसमें लाल रंग के कार्पेट बिछे हुए है।

और इ अस्पताल का नाम है सदर अस्पताल गोपालगंज।

यहाँ पर बहोत सारे चारों तरफ बाइकें रखी हुई हैं और एक गाड़ी है जोकि सफेद कलर की है।

यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक बहोत बड़ा पार्क है।

कुछ लोग यहाँ पर झुंड बनाकर बैठे हुए है और यहां पर एक बच्ची है जो झूला झूल रही है।

और ये सफेद रंग के पत्थर से बनी हुई है।

यहां एक किचल दिखाई दे रहा है। सड़क है।